धूप के कारण पहाड़ चमकीला दिख रहा है।

यह एक जिम करने का रूम है। जिसमे साईकल की तरह उसपे बैठ कर साईकिल या पेडल मार सकते है।